बहुतसी लडकीया दिख रही है नृत्य कर रहे है व पेड दिख रहे है।

टेन्ट दिख रहे है।

इस चित्र मे एक खेत दिख रहा तबेला दिख रहा है दूर खेत सा दिख रहा है पेड़ दिख रहा है मशिने दिक रहे है।

इस चित्र मे एक दुकान दिख रही है जहा पर बहुतसी किताबे है।

इस चित्र मे मेदान दिख रहा है यहा पर बहुतसी घास दिख रही है।

इस चित्र मे एक खेत दिख रहा है जहा पर --

लाइट जल रही है कूर्सीया दिख रही है और कार्पट बिछाया है।

इस चित्र मे ट्रेन दिख रही है एक बच्चों का पार्किंग ट्रेन दिख रहा है आसमान दिख रहा है बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है एक खिलौना ट्रेन दिख रही है। --

इस चित्र मे एक बड़ा पेट्रोल पम्प दिख रहा है यहा पर की मशिने लगी है चबूतरा दिख रहा है खड़े है यहा --

इस चित्र मे शेड लगा है जहा पर कही लोग दिख रहे है बहुत सी भीड़ हो रही।